एक पेड़ बनाया गया है जिसके--

दे रहे हैं। बड़े बड़े मिरर नजर--

कुछ रंग बिरंगी बलूंस नजर आ रहे हैं।

खिड़की नजर आ रही है और जिम का कुछ सामान नजर आ रहा है टाइल्स नजर आ रही है।

यह एक कॉटेज नजर आ रही है जहां पर अंदर बहोत सुंदर दिखाई दे रहा है।

यहां पर कुछ लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं एक साइकिल नजर आ रही है।

जहां पर बहोत सा सामान दिखाई दे रहा है।

जो कि गाड़ी में फ्यूल भरते हुए नजर आ रहा है जिसने इस व्यक्ति ने--

जहां पर बाथरूम का सारा समान नजर आ रहा है।

यहां पर कुछ गीज़र्स टॉयलेट शीट्स वॉश बेसिन --